आर मेम डायरेक्शन दे रही है पार्क में सभी लड़कियाँ खेल रही हैं।

यह एक ड्राई क्लीनर्स है यहाँ सभी लोग कपड़े धुलवाए जाते है हम लोग भी जाते है साड़ियाँ धुलवाते है कोट पेंट भी धुलवाते है ।.

ये एक ऑ एक ऑफिस है यहाँ गेट लगा हुआ है प्रवेश निषेध लिखा हुआ है आम रास्ता नहीं है दो आदमी है जो आगे जा रहे है एक लेडी आ रही है पीले रंग का बिल्डिंग है।

पिटल है हॉस्पिटल में एक कंकाल रखा हुआ है कंकाल सोया हुआ है।